इस चित्र में हमें यहां पर एक सड़क दिखाई गई है।

यहां पर कुछ कॉलम बनाए गए हैं जिनके ऊपर सफेद रंग का पेंट किया गया है।

इसमें एक एंट्री गेट बनाया गया है जिसके बाद कुछ पिलर लगाए हुए है और पिलर के अंदर पत्थर की कुछ मूर्तियां लगाई गई --

चित्र में हमें शाकंभरी ट्रेडर्स दिखाए गए हैं।

यहां पर बीच में एक सीमेंट का गेंडा बनाया गया है।

और पीछे एक द्वाल है जिसके ऊपर नीले रंग का पेंट किया गया है।

और अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है।